सामने एक रोड भी है।

और यहां पर कुछ व्यक्ति भी का ग्रुप बना है।

एक गाड़ी भी है एक व्यक्ति चल रहा है।

यहां पर साइकिल खड़ी हुई है।

और यहां पर कुछ लोहे की समान भी पड़े हैं।

यहां पर बहुत से बै--

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ बाल्टियां भी रखी हुई है।

और बाहर कट्टे भी रखे हुए हैं।

और कैमरा भी लगे हैं और एक चेयर भी रखी हुई है।

और बराबर में भी एक टेंट दिख रहा है।

इस चित्र में एक दुकान है यहां पर एक गेट कंच का भी लगा है।

एक सीढ़ी भी रखी है।

और यहां पर लाइटे भी लगी हुई है।

इस चित्र में इंडियन ऑयल पंप दिखाई दे रहा है।